यह एक हॉल है हॉल में लाल कलर का यहां से स्टेज तक गया हुआ है।

कुर्सी भी लगा हुआ है और दोनों साइड जो लाल कलर का है उसके दोनों साइड ग्रीन कलर का है और दीवाल भी बहुत अच्छा सजाया हुआ है।